एक हरे रंग का बोतल रखा हुआ है एक पंखा भी लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे ब्रेंच लगाए गए हैं।

यहां पे दो आदमी अपना तस्वीर खींचा रहे है।

एक पुतला बनाया गया है।

यह एक जंगल का चित्र है।

फूल का कलर पीला है।

यह एक घर के अंदर का चित्र है।

एक चेयर भी रखा हुआ है।

यह एक नर्सरी का चित्र है यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं।

यहां पे बहोत सारे और भी सामान रखा हुआ है।

यहां पे बहोत बड़े बड़े चट्टान भी है ।

यह एक पिज़्ज़ा के दुकान के बाहर का दृश्य है।

बैलून का कलर सफेद लाल पीला ब्लू है।

यहां पे एक बच्चे का चित्र बनाया गया है।

बहुत सारा चिप्स कुरकुरे रखा हुआ है।

बहुत सारे वायर्स भी हैं कुछ पेड़ है कुछ छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान के बाहर का चित्र है।

दुकान के अंदर कुछ आदमी भी हैं एक टेबल है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पे पार्क का चॉकलेट है फाइव स्टार है।

यहां पर कलम भी रखा हुआ है बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक रखे हुए हैं।

इसका नाम निर्मला कॉलेज है।

बहुत सारे लोग चेयर्स पे बैठे हुए हैं।

यहां पे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं आसपास में बहुत सारे घर भी हैं।